ये एक बहुत बड़ा बैंककट हॉल है यहाँ सामने की तरफ लाइट जली हुई है।

दो गमले रखे हैं लाल रंग के इनके अंदर--

बाहर की तरफ कुछ सिडियां नजर आ रही हैं ऊपर चढ़ने के लिए--

ने पैंट और लाल रंग की हाफ शर्ट पहनी हुई है पास में ही एक व्यक्ति और खड़ा है ये इसके हाथ में--

यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं।

सफेद चादर बिछी हुई है और एक नीली और--

कुछ नीचे गमले रखे हैं सफेद रंग के उनमें लाल लाल--

यहाँ पे एक व्यक्ति नीचे की तरफ झुका हुआ है इसने हाथ में काले रंग के ग्लव्स पहने हुए हैं।

यहाँ सामने की तरफ एक मॉल है।

बड़ा हुआ है कुछ व्यक्ति बैठे हैं इन्होंने कोर्ट पहन रखे हैं।

यहाँ सामने एक व्यक्ति ने सफेद हाफ टी शर्ट पहनी हुई है।

पर्पल कलर की पानी की बोतल रखी है इसका फोन रखा है।

कुछ टेबल रखे हैं कुछ लोग बैठे हैं एक महिला भी है छत में कुछ नाइट लैंप भी लगे हुए हैं एक व्यक्ति काउंटर के दूसरी तरफ --

ये घूमने की जगह है यहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

यहाँ सामने बहुत सारे रंग बिरंगी--

हुए है कुछ फल लटके हुए हैं केले हैं एक व्यक्ति खड़ा हुआ है इसने लाल रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट पेहना हुआ है।

महिला ने सूट पहना है किसी ने साड़ी पहनी हुई है ऊपर की तरफ एक नीले रंग की--

गद्दे के ऊपर नीले रंग की चादर पिछी हुई है बाहर बोर्ड पर फीमेल जर्नल वार्ड लिखा हुआ है।

बाहर की तरफ बहुत सारे स्कूटर मोटरसाइकिल बाइक्स खड़ी हुई हैं।

यहाँ दीवार पर बहुत सारे अलग-अलग नेताओं के पोस्टर्स लगे हुए हैं एक ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर पृथ्वी की--

इसने अपने हाथ में प्लास्टर बांधा है और गले में एक पट्टी भी--

महिलाएं और पुरुष नीचे बैठे हुए हैं इन्होंने अलग-अलग रंग के कपड़े पहने हैं एक व्यक्ति सामने की तरफ खड़ा हुआ है।

पीछे की तरफ पर्दे लगे हुए हैं और एक कैमरा भी रखा हुआ है।

जानवर पड़े हैं काले-काले रंग के पीछे की तरफ कुछ मिट्टी भी पड़ी हुई है कुछ हरे पेड़ से भी नजर आ रही हैं।